पहाड़ पर मकान है ईटा के बनल अस आन पहाड़ कुछर टुकड़ा हेय कुछ घास हेय सुखल हरा एगो पेड़ हेय पीछे में आसमान नजर आवत हैं।

कोई बड़ा सा नदी है पुल है चारगो पाया है।

अ लाल कलर के कार है आक अ छोटा छोटा समान है एक अ बड़ा सा कुंद है गािडीया के पीछे।

अ कुर्सी वुर्सी भी दु चारगो हैं।

घास नजर आवित् है छोटा छोटा छोटा छोटा घास नजर आवित है।

नोइज़ अ व् ह पत्थल हाय छोटा छोटा।

कोई स्कुल के फोटो हाई तीन चारगो बस लगल है कुछ लड़की योगा करित हाई।

थेन हरा सुखल हाय देखें में बहुत अच्छा लगित हाय।

इ कही ऑफिस हाय ये पिला कलर के गेट हाय।

एगो उजाला कलर के मशीन भी रखल है एगो पिला कलर के

एक लड़का हैय उकर परछाई भी नजर आवित हैं लइकवा लाल-अ-उ नीला कलर के सर्ट पहन ले हैय।

ओ कुुर्सी भी रखल हाय।

इ कई बगी इ कई बागीचा हैय इकारा मे पेड़ हैय तार के भी कुछ--